इसमें कुर्सी लगा हुआ है। कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यह घर है। घर में खिड़की लगा हुआ है। पेंट किया हुआ है।